बाहर एक आदमी दिख रहा है जो कि गाड़ी पे बैठा हुआ है जिसने शर्ट पहना हुआ है।

बच्चों के ड्रेस का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत तरह की लाइटें भी लगाई हुई है।

यह एक फैक्ट्री के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग अंदर टेबल पर बैठे हुए हैं।

बाहर दो गाड़ियां लगी हुई हैं।